सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग तीन मंजिला की है।

साइड पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

गुरुओं की फोटो भी लगी हुई दिख रही हैं।

कुछ लोग ने मास्क भी लगाए हुए है।

साइट पर बाइक और स्कूटी लगी हुई दिख रही है आस पास बहुत सारी दुकानें भी दिख रही हैं आसमान--

लगी हुई दिख रही है एक फायर सिलेंडर भी दिख रहा है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है ये किताबों की दुकान है इसमें दो आदमी--

दिखाई दे रहे हैं आसमान--

सामने एक कपड़ों का शोरूम दिखाई दे रहा है।

लगे हुए दिख रहे हैं यहां पर टावर भी दिखाई दे रहे हैं।